चित्र मे पानी दिख रहा है पानी के ऊपर पूल दिख रहा है।

इस चित्र मे किराना स्टोर दिख रहा है उस में कुरकुरे है चॉकलेट दिख रहे है ए.टी.एम. है पे टी एम है जिन लोगों को वो कॅश नहीं है उन्होंने उनको पे टी एम करना है।

बहुत सारे क्रीम्स है।

इस चित्र मे किराना स्टोर दिख रहा है पॅराशुट तेल दिख रहा है बहुत सारा सामान है।

शोरूम दिख रहा है फोर व्हीलर का सोलापूर में सोलापूर में है शोरूम उसका नाम रेनॉल्ट है।